एक चोत्तरे के ऊपर इसके अगल- बगल में कई सारे पिच पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है जो की काफी हरे- भरे है बोहोत ही सुंदर नजारा है। बोहोत ही--